कुछ भी करे मेरे को क्या।

और पेड़-पौधे बहुत सुन्दर-सुन्दर दिखाई दे रहे हैं।

और इन्हें फ़ूल के माला से सजाया गया है ।

यहाँ एक ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है और --